गेट है जिसमे ताले की तार लगा हुआ है उसमे एक खम्बा है और एक आदमी एक औरत खड़े हुए है।

एक मंदिर है जिसमे मंदिर मे टाइल्स लगे हुए है कुछ पॉट रखे हुए है और परछी दिखाई दे रही है।

एक बस सामने खड़ी हुई है एक आदमी अपने बैग को लेकर खड़ा है और आगे की ओर देखता हुआ है।

बल्ब लगे हुए है एक लेडीज बैठी हुयी है सीट पे एक लेडीज खड़ी हुयी दिखाई दे रही है और सीढियाँ भी दिखाई दे रही है।

एक चट्टान है जिसमें उस चट्टान में अंदर एक आदमी खड़ा है और आदमी पक हाथो को चट्टान को पकड़े हुए है।

और एक घर दिखाई दे रहा है मकान काफी ऊपर दिखाई दे रहा है कुछ पेड़ दिखाई दे रहै है और कुछ आसमान भी --

हॉल दिखाई दे रहा है हॉल मे कुछ सर्किट दिखाई दे रही है दिखाई दे रही है।

जमीन दिखाई दे रही है इसमे कुछ सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है और कुछ लाइटे दिखाई दे रही है कुछ दिखाई दे रही है।